उसके साथ में एक और दुकान है।

यहां पीले रंग से लिखा है।

बहोत सारे बोर्ड लगे हुए हैं।

कॉफी पेटिया भी रखी है।

सड़क पर कुछ लोग जा रहे हैं।

इसमें कुर्सियां और मेज दिख रहे हैं।

ये तस्वीर एक पार्क की है।

जिस पर एक लड़की बैठी हुई है।

यहां लोहे का जाल भी दिख रहा है।

ये पोस्टर एक दुकान के बाहर लगा हुआ है।

की है दुकान में थोड़ा बहुत खाने का सामान है।

ट्रैक्टर में काले और लाल रंग है।

उसने सर पर कपड़ा बांधा हुआ है।

ये तस्वीर एक दावत प्लेस की है।

ये तस्वीर एक बहोत सुंदर रास्ते की है।

ये तस्वीर एक गुरुद्वारे की लग रही है।

ये तस्वीर एक चमकती हुई लाईट की है।